पीछे की ओर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है।

एक व्यक्ति ब्लू टी-शर्ट में दिख रहा है।

यह हमें दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर कुछ पत्ते ग्रीन कलर के--

जिसमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ी।

सामने ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे--